एक टी_वी है ऊपर सीलिंग में लाइट लगी हुई हैं।

उसका सरसा लाल रंग के कपड़ो से--

एक मोटी लंबी औजार है।

यह एक मॉल का तस्वीर है।

यहां हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग आए हैं इसके अंदर घूमने।

सड़के बहुत ही अह अच्छे--